इसका फेस को कवर करके है।

और यह जो कठपुतली है उसका ड्रेस का कलर कलरफुल है।

ये फोटो में हमको एक रूम दिख रहा हैं।

ये फोटो में हमको एक शॉप दिख रहा है।

इधर में एक टेबल है।

स्कैनर कोड रखे है एक।

लाइट्स ऑन करके है।

इसमें बहुत ज्यादा लोग का पोस्टर लगा के है।

पीछे में बरा बरा पेर है।

बाहर में भी आदमी घूम रा--

जहां में बहोत ज्यादा समान है जिससे एक्सरसाइज कर सकता है।

यहां से बहुत ज्यादा वायर ज्वाइन हो रहा है।

और उसका पीछे का दीवार लोहा से और कार्ड से बना के है।

इसमें बादल है सफेद रंग का।

एक टेबल भी है।

और वो लोग ब्लू कलर का जर्सी पहन के हैं।

और बिल्डिंग सब भी दिखाई दे रहे है।

जो कि एक जैकेट पहन के है जूता पहन के है।

पीछे में बहोत बरा बरा पेर है।

ऊपर मे आसमान दिखाई दे--

ट्राइपॉड भी है ब्ल्यू कलर का।

इसमें बस एक फ्लोर तक है।

ये घर में दरवाजा बना हुआ है।

फोटो मे हमको एक दुकान दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा कार्टून भी है।

यहाँ पर सफेद और यलो कलर का बस्ता है जिसके अन्दर कुछ भरा हुआ है।

आकाश दिखाई दे रहा है।

ये एक अं ब्रिज जैसा लग रहा है।